आगे की तरफ मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है।

सारे पेड़ों को भी देख पा रही हूं।

में की कुछ बोया गया है और यह हरी हरी दिखाई दे रही है।